अवार्ड भी है और बैड है दो ताकिये है दो कुर्सी है एक बैग है और बैड पर कुछ समान भी रखा है।

गले में पहनाते हैं और यहां पे सर्विस खुद मिलते हैं जो भी--

तिरंगे की लड़ी लगी हुई है रंगोली बना रहा है आदमी आदमी के हाथ में थैली है और कई आदमी खड़े भी है लेडिस भी खड़ी और बच्चे भी खड़े हैं।

बाल विद्या मंदिर हाई स्कूल ये स्कूल भिवाड़ी में है बहोत अच्छा--

साइड के मैदान भी है।

एक पार्क है यहां पर लाइटें भी लगी हुई है खंभे भी लगे हुए हैं छोटे बच्चों के खेलने कि--